एक कमरा-सा है कमरे का कलर व्हाइट और रेड में है पीछे दीवार पे एक बोर्ड लगा हैवो दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे एक बड़ी सी जगह दिख रही है वो जगह मे बहुत सारा समान भी दिखाई दे रहा है एक पानी का टैंकर दिखाई दे रहा है दो लेडिसे सब्जी काटते हुए दिखाई दे रही है।

इस ईमेज मे मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे है एक स्टेज बना है वो दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ लड़के गिट्टा बजा रहे है।

इस इमेज मे मुझे एक बड़ा सा हॉल जैसा दिखाई दे रहा है एक मंदिर जहां यहां पे ढ़ेर सारे लोग हैं वो दिखाई दे रहे है।

उम्म वहां पर कुछ झंडे लग रहे है ऊपर वो दिखाई दे रहे है लाइटें दिखाई दे रही है आजू-बाजू पेड़-पौधे लगे हुए पेड़ दिखाई दे रहे है नीचे हरी कारपेट दिख रही है।

आ --आ --आ पीछे परदे लगे हुए है पर्दे दिखाई दे रहें है और टेबुल दिखाई दे रही है और पीछे जो दीवार है वो दीवार दिखाई जिसका कलर व्हाइट है।

मैदान के आस-पास मुझे कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है एक मकान दिखाई दे रहा है और कुछ लोग है वो दिखाई दे रहे है पास मे रेत डली है एक रेत-रेत दिखाई दे रही है।

इस ईमेज में मुझे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं सामने एक टीचर दिखाई दे रही है एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

इस इमेज में इस इमेज में मुझे एक छोटी सी दुकान दिख रही है वहाँ एक लड़का खड़ा है उसके पास-पास बहुत-सा सामान है।